बट यहां पर सारा सामान शो हो रहा है यहा पे कलर्स टेप पेंसिल पेन टेप सब कुछ शो हो रहा--

स्कूल है ना यहां पर स्कूल के नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और एक गार्डन भी है स्कूल के पास।

अनापतिसा मिठाई ये सारे शो हो रही है।

मकान के ऊपर दो कारीगर बैठे हुए हैं मकान बना रहे हैं सीमेंट से कुछ लकड़ियां भी लगी हुई है।

साइड में एक झंडा भी लगा हुआ है।

ये कुछ जगह बनी हुई है लाइटिंग लगी हुई है आस पास सारी --

एक बाइक भी खड़ी हुई है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

उसमें से एक बच्चा खड़ा हुआ है और एक लड़की डांस कर रही है और एक लड़की देख रही है।

और शॉप के बाहर दो बाइक खड़ी हुई हैं।

एक ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ है जो अभी गेट खुला हुआ है और उसके अंदर एक लड़का जा रहा है।

यह शॉप है और ये साथ में मोबाइल एयरटेल कि शॉप है एयरटेल की शॉप के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है।

घर बना हुआ है घर के साथ ना एक मंदिर है मंदिर के साथ में एक झंडा लगा हुआ है।

और एक लेडिस है ना बात कर रही है ऑटो वाले से--

चर्च बना हुआ है चर्च के बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं और एक झंडा लगे हुआ है कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये एक गाड़ी का गैरेज है यहां पर है ना दो गाड़ियां खड़ी हुई है।

बड़ा हना जंगल सा है यहां पर आना बकरी आना दो एनिमल्स और खड़े हुए हैं जो हना घास खा रहे हैं।

और एक दो तीन बड़े बड़े ट्री हैं छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं ये पूरा गार्डन बना हुआ है।

एक डाइनिंग टेबल बिछी हुई है एक सामने सीनरी है ऊपर पंखा ए_सी और क्रोकरी का सामान भी दिख रहा है सामने--